यह एक कमरा है कमरा में चारों तरफ से दीवाल है सामने गेट भी है खंभे भी लगे हुए है खंभे--

सामने वो येलो कलर की दीवाल है ऊपर खम्बे वाइट कलर के हैं--

ग्रिल बनी हुई है ग्रिल पिंक कलर की है नीचे चारो तरफ शहरी घास हरे-हरे पेड़ पौधे है--

यहाँ ग्रीन कलर की टिन की शेड है शेड के नीचे बहत सारा --

मंदिर के उधर भी बहुत सारी बाइक गाड़ी दिख रही है।

यह शादी का मंडप है मंडप के चारो तरफ से सजाया गया ऊपर आडी क कलर के--

ये लगाई है सामने सोफे भी लगे है सोफे पर वो श--

ठीक पीछे बेंच भी रखा गया सामने में रखा गया--

यह एक हॉल है हॉल में बहोत सारी कुसचिया और बेंच भी लगे हुए हैं बेज भी लगे हुए हैं।

बाहर के दरवाजे डोर कांच के लगे हुए हैं।

कुछ बर्तन रखे गये हैं जो व्यक्ति बेठा है उसके पीछे रैक है रैक पर थोडा बहुत सामान रखे गये है दोनों तरफ फिर से रैक है।

यह सड़क के किनारे लाल मिट्टी मिट्टी के बगल में--

घर को गिरा रही हैं चारों तरफ से पेड़ पौधे भी है सामने एक फिर मशीन खड़ी हुई है।

खिड़कियाँ भी हैं बीच में पर्दे भी लगे हुए बीच में भी--

कुछ हरी पत्तियाँ गाडी गई है।

बाइक के ठीक सामने दुकान हैं दुकान पे बहुत सारे बोर्ड लगे हो बोर्ड --

यहाँ शादी का मंडप भी हो सकता हैं दो गुलदस्ते भी रखे गुलदस्ते में भी--

कल कलर के फूल रखे हुए एक लेडिज खड़ी हुई है एक जेंट्स अंदर की ओर तरफ जा रहा है।

ये खेल के मैदान है खेल के मैदान में बहुत सारे लड़के लड़कियां खेलते हैं।

उसके पीछे-पीछे सब खड़ी हैं पीछे ट्रक भी खड़ा है।

शोरूम है शोरूम के ऊपर अह अंबुजा--

दुकान के अंदर बहुत सारे सीमेंट रखे गए हैं ऊपर बोर्ड लगा है बोर्ड पे कुछ लिखा गया है।

आसमान साफ दिखाई दे रहा हैं आसमान रंगबिरंगी दिखाई दे रहें हैं।